यह किसी सब्जी मंडी या किसी दुकान का--

भिंडी है और हरी मिर्च है और प्याज है और ककड़ी रखी हुई हैं।

और यहां होटल या रिसॉर्ट के सामने बहुत सारी गाड़ी ओ ट्रक खड़े हुए हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली है।

और एक गाड़ी इसके ऊपर छत छत है और सफेद रंग की है।

देखने में यह एक फोटोग्राफर की सोफिया--

प्रोडिकल कंक्रीट का एक क्षेत्र है जहां पर बहोत सारी मशीन लगी हुई है।

और दिखाई दे रही है और कांच का एक शीशा भी है जिसका पूरा गेट --

और कुछ छड़ियां हाथ में ले रखी है और अपने सींगों में मुकुट --

ट्रॉली को वेल्डिंग किया जा रहा है और जिसके पास --

एक जैक भीं रखा हुआ है बहुत सारा लोहे का सामान भीं रखा हुआ है।

यहां दो तीन क्रेन खड़ी हुई है जिनका कलर --

बैक साइड में दो चेयर और रखी हुई है और दीवार पे बहोत सारे फोटो या फ्रेम रखे हुए--

कलर सफेद है और वॉलिंग भी लगी हुई है और बिल्डिंग के चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली भी--

और एक पानी का कैंपर भी रखा हुआ है।

देखने में यह एक बहुत बड़ी संस्था है।

डांस चल रहा है और चारो तरफ--

तीन लड़कियों ने ऊपर हाथ कर रखे है।